एक आदमी को दिखाया जा रहा है जो की जीन्स पहने हुए है शर्ट पहने हुए है जूता पहने हुए --

साइड में बहत सारे जंगल बुंगल दिखाए जा रहे है छोटे छोटे पौधे --

मट्टी के रास्ते टाइप के दिखाए जा रहे है।

दरवाज़ा दिखाया जा रहा है दारवाज़े पे भी रेड कलर कर दिए गये है एक बोर्ड टाइप का टंगा दिया गया है।

एक बाउंड्री टाइप का दिखाया जा रहा हैं और वहां मट्टी वट्टी दिखाई जारी हैं गोबर दिखाया जा रहा हैं एक छोटा सा बाउंड्री टाइप का कर दिया गया हैं।

स्टेशन पर बेठने के लिए बहोत सारे जगह वघ बना दिए है।

स्टेशन का नाम कुछ धदरी वार्य टाइप --

और बगल में एक घर दिखाया जा रहा है छोटे छोटे दुकान वुकान दिखाए जा रहे है एक बाइक दिखा--

बाउंड्री दिए गए हैं। लोहे का एक गेट हैं अंदर पे दो तीन चेयर रखे हुए है जो कि व्हाईट में है येलो पे है अंदर में भी बहोत सारे --

घर दिखाया जा रहा है जो कि दो तल्ला दिखाए जा रहे लोहे के गेट दिखाए जा रहे हैं।

कुछ बाउंडरी टाइप के कर दिए गए है बड़े बड़े से पेड़ दिखाए जा रहे है नीचे --

तार दिखाये जा रहे है कुछ इटे विटे दिखाया जा रहे है डीलाये करने वाली मशीन वशिन रखी हुई है बोहोत सारे --

लमीनेसोंन गेंदा फूल के फूलो से सजा दिया गया है ऑरेंज अ--

कुछ वाइब्स में है उसमें कुछ खाम वाम टाइप के पहाड़ वाढ़--

ये पुल वुल दिखाई जा रहे है दो तिन कार वार खड़ी है एक--

एक पलंग दिखाया जा रहा है जो की अभी पूरी तरह से कम्पलीट नहीं हुआ है उस पर बस प्लाई बिछा दिए गये है ।

अ ऊपर पर कुछ गद्दे वड्डे टाइप के लगा दिए गये हैं जो की ब्लैक कलर और वाइट कलर पर हैं और एक सकेग दिखाया जा--

छोटे छोटे घास वास दिखाए जा रहे हैं एक रोड टाइप का दिखाया जा रहा है एक कच्चा रास्ता कच्चे रास्ते पर भी कुछ मशीन वशीन को--

अन्दर पे मार्बल वर्बल लगे गये है कांच के गेट वेट टाइप के दे दिए गये है निचे फर्श पर --